यहाँ पर कैफ़े के बाहर सब लोग फोटो खींचता है।

यहाँ पर एक लौरी का सार्विस हो रहा है।

इस सड़क के किनारे एक प्लानिंग प्रोजेक्ट भी किया गया है।

इस नदी के ऊपर नाव से लोग घूमता है।

स्कूल के अंदर ढेर सारे कल्चर पोग्राम भी होता है।

यहाँ का कलेक्शन बहुत ही लेटेस्ट है।

गार्डन के चारो तरफ पैदल चलने के लिए छोटा-सा एक सड़क भी है।

इस दुकान का ओपन डे है इसलिए इसमें आज कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा।

यहाँ पे बोहोत ही हार्डवर्किंग कराया जाता है।

इस लाइब्रेरी के अंदर ढेर सारा रैक्स हैं।

यहाँ पर पांच सौ गेस्ट स्टेज के चारो तरफ घूम रहा है।

इस इंस्टिट्यूट में पांच सौ स्टूडेंट पढता है।

इस दुकान में घर का सारा क्-सामान मिलता है।

इस स्कूल के अंदर एक कॉमन रूम है।

ये हमारे इलाका का एक रोड साइड एरिया है।

यहाँ पर ढेर सारे फ्लैट्स है।